जैसा की आप यहाँ पे देख सकते है आपको यहाँ पे दो मॉल बने हुए दिखाई दे रहा है।

जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा हैं आपको यहाँ पे एक टी_वी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।